अगल बगल दुकान छन और बहुत बड़ी दिखना दिखन में --

कि दिखाय देनी खदे प्याड़ा-पेड़ छन।

और मंदिर ठुल्ला न थे नंनं च।

ये ठुलू जगह छ।

दुई मेंस छन बाट में चलनी और समणी बटी पेड़ छन पेड़ ठुलू ठुलू छन समणी बटि जंगल वे छे और --

घर बड़ी दिखना भाल दिखाई देना इमे कलर कर रखो और बड़ा भाल छू।

तलि बिटि पानी क तालाब छ तालाब की छ नहर छ।